काफी आते जाते रहते हैं इसलिए जगह देखने में लग रहा हैं कोई सरकारी जगह हैं यहाँ तो वो आदमी भी आता जाता हैं वो गाड़ी भी लगा हुआ गाड़ी में भी सायद--

ये जगह कितना साफ कितना सुन्दर दिख रहा हैं ये जगह में कितना आदमी आये हैं देखने के बिल्डिंग भी बहुत ही अच्छा दिख रहा हैं बिल्डिंग देखने में लग रहा हैं कोई सरकारी--

लोग में सबके मुँह में मास्क लगा हुआ है ताकि किसी की बीमारी फैलने की कोई न--